एक खेत है इसके बैकग्राउंड में ग्रीन ग्रसेस लगी हुई है सेन्टर में लाल कलर की पत्तिया लाल कलर के फूल पीले कलर के फूल बैकग्राउंड में खाई नजर आ रही।

ये एक फल फ्रूट की दुकान है इसमें कई तरह के मेंगो रखे हैं यल्लो कलर के मेंगो हैं ग्रीन कलर के मेंगो हैं।

यह एक जंगल की इमेज है इसमें सामने एक सड़क नजर आ रही है।